कुर्सियाँ रखी हुई है जो कुरसियों मे कुछ लोग बैठे हुए है अगल बगल हरे पेड़ पौधे है अ-और बादल सफेद और नीले है ।

और एक ब एक गाड़ी खड़ी हुई है। और बादल सफेद--

होटल है जिस होटल में हर वे झुमरे लगी हुए हैं लाइटें ल-ल-लाइट के झूमर लगे हुए हैं और कांच लगे हुए हैं और उस हरे पेड़ पौधे हैं और बादल नीले है। .

गेट लगा हुआ है जो गेट में एक गेट के पास एंट्री लिखी हुई है।